काफी ग्राउंड कच्चा ही है पक्का नहीं है।

काफी अच्छा है। यहाँ पर वो ग्राउंड है जहाँ मैच खेला जाता है।

जैसे कोई मीटिंग की जारी हो। काफी बड़ा रूम है। कुर्सियाँ भी बढ़िया बढ़िया गिरी हुई।

मंदिर में जाने के लिए काफी बड़ा तो नहीं है गेट ।

कोई बुक किसी रंग का है कोई कैसे रंग का है।

ये हमने जो बच्चों को सिखाया था वो ये कुछ कर पायेंगे या नहीं कर पायेंगे। इस चीज का टेस्ट ले रहे हैं टीचर बच्चों से।

पेड़ पौधे भी हैं इसके इनके में। काफी अच्छा है।

एक साइड में एक दीवार पर दो --

चारों तरफ गुब्बारें लगाए हुए हैं।

रूम में एक काउंटर भी है।

एक चिन्हा बना हुआ है दूसरे रूम में जाने के लिए।

डी.जे. जैसे शादी होती है या पार्टी होती है जन्मदिन होता है। जब लोग रौनक बढ़ाने के लिए इसको बजाते हैं।

नदी का जल बहोत ही शुद्ध होता है।

इनके दो लड़के भी खड़े हुए हैं बाहर की तरफ। अच्छी रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई --

गेट भी काफी मजबूत है। भी है हरी हुई।

बलिया देखाई दे रहा है मजबूत है।